अं आउ हरा-हरा ओहें भी एमा पेड़-पौधा अउ मस्त दिखत हे मम- नीला असमान अओ धुप के छाव--

इमे बहुत कम पुट्ठा मन दिखेत हे।

ऐ हा नरवा ए कहुक ले दिखत हे।

आउ नरवा के तीरो तीर मा पेड़ पोधा लगे हे।